के लिए बुक खरीदते है अन्य सारे किताब है।

ताकी लोग यहाँ बाइक खरीदते है इसलिए यहाँ पे बाइक खरीदते हैं।

फूल है और बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते है अपने बच्चो के साथ में पार्क देखने के लिए बहुत सारे यहाँ झुलुआ है झूलने के लिए आते है।

यहाँ एक रूम है यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर है सी.पी.यु. है बहुत सारे लोग यहाँ कंप्यूटर चलाने के लिए आते है और सीखते है कंप्यूटर।

अच्छे-अच्छे पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं घूमने के लिए बड़ा पोखर है यहां पे --